बहुत सारे बाइक्स भी लगे हुए है साइकल्स भी है और आदमी भी--

और स्टील का बाउंड्री भी बनाया हुआ है और इस गेट के आसपास पेड़-पोधे भी हैं और इस गेट पे लिखा है कानन--

यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रहा है और इस बिल्डिंग के नीचे बांस लगाया हुआ है।